वहाँं पर ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक वायरस नजर आ रहे है। एक ओर घास नजर आ रही है। लाल मिट्टी नजर आ रही है और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है काफी अच्छा दृश्य नजर आ --

इलेक्ट्रिक बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायरस नजर आ रहे है वही वहाँं पर काफी बड़े हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे कुछ छोटे हरे वृक्ष भी दिखाई दे रहे वहाँं पे एक पाइप डाला गया नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का है।

काफी बड़ा हॉल नजर आ रहा है। यह किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो दीवार नजर आ रहा है वह कुछ निले और हरे रंग का दिखाई दे रहा है और वहाँ पर सीलिंग दिख रही है। सब सफेद रंग की ट्यूबलाइट लगी हुई दिख रही है। वही वहाँ पर एक घड़ी नजर आ रही है।

और वहाँ पर वह कम्पाउंड दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का है कार वहाँ पर एक नजर आ रही है जो सफ़ेद रंग की दिख रही है। काफी बड़े हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं। रेत नजर आ रही है ।

यह टेरेस पे काफी लोग योग आसनआस करते हुए दिख रहे हैं। डोर मैट नजर आ रहा है जो ग्रीन कलर ऑरेंज कलर पर्पल कलर का दिख रहा है और वहां पर --